एक रूम है लोहा का गेट लगा हुआ है पोस्टर साटा हुआ है पोस्टर लिखा हुआ है हरा कलर से रंगा हुआ है।

एक रोड है बिचे-बिचे और आधी-आधी घर है। पिला कलर का रंगा हुआ है। चार-चक्का लगा हुआ है बाइक एक लगा हुआ है। एक जेन्ट्स एक खड़ा है और दो पेड़ हय |